आज स्कूल में अंदर लाइट न होने की वजह से इन सब बच्चों को बाहर बिठा दिया गया है और बाहर नेचुरल लाइट में इनको पढ़ाया जा रहा है।